ये कुड्सी भी दिखाई दे रही है जो की यहा पर के कुछ बर्थन बनाये हुए है जो देखने में बहोत ही अच्छे बर्थन दिखाई दे रहे है।

और बहोत आच्छे या पर बर्तन बनाए गये हे या पे बहोत अच्छे लग रहे हैं।

यहाँ पर कुछ लेडीज बैठी हुई है वो खेल कुछ जेंट्स लड़के किचन में वो एक यहाँ पर घड़ी बनाई हुई है जो की रास्ते के बीचो बिच बनाई हुई है और ये बहोत ही इसमें अनुमान करीब कोष्ठक लगाया हुआ बहोत अच्छे यहाँ पर पोस्टर लगाया हुआ--

और ये किसी चीज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही है इसका एक टायर बहोत ही गहराई में चले गया है।

यहां पर मुझको एक अं गुम अं शॉपिंग का ओ बनाया गया है परचून के दुकान से बनाई गई है।

जो सामन खरीदते है तो उसपे अच्छी छुटे मिली हुई--

ये किसी चीज का ऑफिस बनाया गया है बहुत अच्छे यहां पे डेकोरेशन की गई है कुर्सियां रखी हुई है कुर्सियां रखी हुई --

यहां पर एक उपर बिल्डिंग के उपर सैमसंग कंपनी के कुछ मशीने रखी हुई है जिसमे कुछ खराबी आ गयी है ये ए_सी है जो की बड़े वाली ए_सी है।

बहोत अच्छे अपनी पोस्टर भी लगाया हुआ है। जो देखने में बहोत अच्छा लग रहा है।

उसके बराबर मे बहोत ऊपर के साइड में लिखा हुआ है।

और यहाँ पे वाश आती हैं और यहाँ पर लोड कर के भाग जाती हैं बहुत आच्छे यहाँ पर काम चल रहा हैं ये कारखाना हैं बहुत अच्छा यहाँ पर कारखाना हैं।

ये एक कॉफी शॉप बनायी गयी है यहाँ पर कॉफी चल रही है बहुतही गरमा गरम यहाँ पर कॉफी मिल ज्याति है एक लड़का है यहाँ पर कॉफी दे रहा है पीछे पंखे भी लगे हुए है।

यहां पर कुछ भी रहे हुए कुछ दारू रहे हुए सोडा भी रखा हुआ है।

यहां पर छोटे बड़े सभी प्रकार के यहां पर फोन मिल जाते है बहुत ही सस्ती किस्तों पे मिल जाते हैं।

उसने और उसके सामने कुछ सफेद कलर की बिल्डिंग बनाई गई हैं यहां पर भी लगे हुए हैं।

यहा प मुझको एक दिखाई दे रही है जिसमे बहोत सारी--

दिखाई दे रही है कोई यहां पर ए_सी वगैरा सभी प्रकार की चीजे रखी हुई है और बाहर के साइड में एक पीले कलर की कार रखी हुई है जोकि --

जो कि बन्दे हुए हैं जुटे बुत बुत खतरनाक दिख रहे हैं।

ये जे गेट भी माके है जो बहोत ही मजबूद भी है बहोत मजबूद सी पिलाई लगी हुई है बहोत अच्छी फीलिंग है ये--

यहां पर कुछ छ बहोत ही अच्छी डेकोरेशन दिखाई दे रही है यहह कि बहुत ही ऊंचाई से फोटो क्लिक किआ गया है ।

और कुछ यहां पर स्कूटी दिखाई दे रही है कुछ कारे दिखाई दे रही है बहुत अच्छी यहां पे डेकोरेशन की गई है।